मॉल बगल में बहोत सारी दुकाने नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक फूलों का दुकान नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक पत्थर का पहाड़ नजर आ रहा है।

पेड़ पौधों के नीचे का जो मिट्टी है वह बहुत ही गंदा दिख रहा है।

दृश्य कुछ ऑटो नजर आ रहे है।

बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य के नीचे कुछ बस चलती हुई नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में कुछ ऑटो चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बहुत सुंदर मन्दिर नज़र आ रहा है।

इस दृश्य में एक पेस्ट्री शॉप नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक बहुत सुंदर बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक खुला मैदान नज़र आ रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

वाल में जो फूल लगे हुए हैं वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं।

कमरे के जो खिड़की हैं। उनमें कार्टेन्स लगाए गए नजर आ रहे हैं।

गार्डन के आसपास बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

कमरे में एक बेड लगाया हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में कुछ लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

लेटर बॉक्स के पास एक आदमी का सर नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के नीचे एक साइन बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक फूलों वाला गार्डेन नजर आ रहा है।

मंदिर के पीछे बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।